यह एक जंगली इलाका है जहां ग्राउंड में बहुत सारी घास पेड़- पौधे झाड़ियां उगी हुई हैं।

तथा खेतों के किनारे पर पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यह एक पहाड़ी इलाका है जहां बहुत सारे पेड़-पौधे और घास फूस उगी हुई ।

आस-पास दिवार पे लाइटे लगी हुई हैं।

एक फिसल पट्टी हैं जिसका कलर येलो है तथा बीच में एक ब्लैक कलर का डंडा लगा हुआ हैं साइड में सीडियां बानी हुई--

आसपास पोस्टर लगे हुए हैं तथा थोड़ी दूरी पर घर और पेड़- पौधे हैं।